यहां पर एक गाड़ी ब्लैक कलर की खड़ी है और इधर साइड में एक टपरिया है और वहां पर दो आदमी खड़े हैं।

कटरा है और यहां पर बहोत सारे फूलों से डेकोरेट भी किया हुआ है।

और यहां पर पेड़ पौधे यहां से रोड जाने के लिए रास्ता है गेट लगा है।

यहां पर बहुत सारी सलाखें हैं।